इस चित्र में ऊपर चट्टानें दिख रही हैं। चट्टानों पर धूल पत्थर दिख रहे हैं। पेड़ दिख रहे हैं।

इस चित्र में एं पत्थर की ज़मीन दिख रही है। एक सामने मूर्ति रखी हुई दिख रही है। मूर्ति के उपर छत दिख रही है।

उम्म ऊपर छोटी घास लगी हुई है। ज़मीन पर भी बहुत-सी घास लगी हुई है।

इस चित्र में लोहे का बड़ा बिजली का खम्भा दिख रहा है बादल दिख रहे हैं आसमान दिख रहा है।

लगे हुए हैं। नारंगी सफ़ेद और हरा झंडे लगे हुए हैं।

पर तार बना हुआ है। एक जीना बना हुआ है। घर में एक दरवाजा दिख रहा है। एक दो खिड़कियाँ दिख रही हैं।

लोहे का ताला जीना दिख रहा है। दो बच्चे आते हुए दिख रहे हैं।

ये काँच की दीवार दिख रही है। एक साइकिल खड़ी हुई दिख रही है। पेड़ दिख रहे हैं।

बड़े-बड़े पेड़ दिख रहे हैं। एक कुर्सी दिख रही है जिसपर एक आदमी बैठा हुआ है। बिजली के खम्भा दिख रहा है।

इस चित्र में बोहोत सारे फूल की मालाएं दिख रही हैं।

तीन आदमियों ने पगड़ियां बांधी हुई हैं।

एक आदमी काले कपड़े पहना हुआ है।

एक तरफ बहोत सारी साइकलें खड़ी हुई दिख रही हैं। एक तरफ दो तीन लड़के खड़े हुए दिख रहे हैं।

इस चित्र में एक मूर्ति जाती हुई दिखाई दे रही है जिसके आगे पीछे बहोत सारे आदमी--

जिसमे बहुत सारी किताबे जमी हुई है। सफ़ेद रंग की छत बनी हुई है। एक लाल रंग की टेबल रखी हुई है।